सामने समंदर भी बहोत अच्छा दिख रहा है जो की अति सुंदर है।

पेशेंट या कुछ पेशेंट के बॉडी पार्ट को रिलैक्स करने के लिए मशीनों का युज किया जाता है।

जो कि पेशेंट के किसी भी बॉडी पार्ट अगर ब्लॉकेज वैगेरा है उनके लिए काम मे आती है यहा पर रखी हुयी मशीन --

इस इमेज से हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह जो सामने बिल्डिंग हैं।

दीवार पर बैलून रखे हैं।

जो कि किसी काम के लिए यूज में किया जाता--

यह एक गार्डन की इमेज है इसमें एक मनुष्य हाथ में एक--

सामने एक बिल्डिंग है बिल्डिंग पर एक बोर्ड लगा हुआ है ह हरियाणा विद्युत प्रशासन--

इस इमेज में हम स हम साफ बता सकते हैं कि यह इमेज किसी--

सेल्स कोऑपरेटिव इस दुकान में कुछ--

मंदिर की मंदिर को और भी आकर्षक मना रहे हैं।